यहां मुझे एक बड़ा सा हॉल दिख रहा है।

पीछे की तरफ मै एक सोफा भी देख पा रही हूं।

साइड में मैं गेट भी देख पा रही हूं।

और वोडाफोन आदि चीजें लिखी गई हैं।